ये छोटी छोटी हरियाली भी बहोत अच्छी दिखाई दे रहीं है।

सड़क दिखाई दे रही है जहां पे कुछ खंभे गढ़े हुए हैं जिनसे बोहोत सारे तार निकले हुए हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे मकान है बहोत सारे टेड्डी भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बहोत सारी बसें खड़ी है जो नीले और लाल सफेद रंग की दिखाई दे रही है।

यहां पे कुछ सफेद और काली रंग की कुर्सियां पड़ी हुई है।